ये पिक्चर में हमको बहुत बड़ा सा गेट डिखाई डे रहा है।

ये पिक्चर में हमको रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

यहां मे हमको एक डेस्कटॉप भी दिखाई दे रहा है।

कोई हम बहुत सारा सा सोफा भी दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत खिड़की भी नज़र आ रहा है।

हमको यहां में बहोत सारा चेयर भी नजर आ रहा है।

यह पंडल जो है पिंक और येलो कलर का है।

हमको यहां एक घर का अंदर दिखाई दे रहा है।

ई कोई हमे बादल भी दिखाई दे रहा है।